हमें एक जिम दिखाई दे रहा है एक लड़का है जो अपना फोटो क्लिक कर रहा है शीशे में नजर आ रहा है और यह जिम है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है रॉड के जंगलों से।

इस में एक होटल दिख रहा है जिसमें कुछ लोग खाना खा रहें हैं कुछ लोग खाना को सर्वे कर रहे हैं बाल्टी रखा हुआ है उसपे खाना है | दे रहे हैं तीन लोग जो हैं खाना दे रहे हैं |

इसमें हमें दिखाई दे रही है जिसका नाम श्री राजेश्वरी बुक लिंक्स का लिखा हुआ है।

इसमें हमें घर दिखाई दे रहे है जिसका गेट बहुत बड़ा है और गेट का डिजाइन बहुत सुंदर है फूलो के डिजाइन में लगा हुआ है